यहां फ्लावरऔरा व्हेन वर्ड्स आर नॉट इनफ लिखा हुआ है यहां कुछ सामान्य रखी गई है।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

यहां बल्ब जल रहे हैं यहां एक लकड़ी की मेज बनी हुई है।

यहां कुछ लोग भी हैं यहां हरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं यह चारों ओर से घेरा हुआ है।

यहां एक बड़ा मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां कुछ रथ बने हुए हैं जिसमें भगवान की मूर्तियों पर मालार्पण किया गया है।

यहां बहुत सारे रेक बने हुए हैं जिसमें साड़ियां रखी हुई है।

यहां एक शीशे का दरवाजा भी लगाया गया है।

यहां एक कुर्सी पर इंसान बैठा हुआ है।

यहां लकड़ी की बहुत सारी रेक बनी हुई है।

यहां हरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं यहां एक लोहे का गेट लगा हुआ है।

इसमें ओम सत्य संकल्प विहंगम योग संस्था लिखा हुआ है।

यह एक मॉल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां एक खिड़की भी लगा हुआ है जिस पर काले रंग का पर्दा टांगा गया है ।

यहां मच्छरदानी से कुछ ढका हुआ है।